और नीचे ही बहुत सारी मोटरसाइकिल स्कूटी खड़ी हुई है।

यह एक रेसिंग स्विमिंग पूल है इसमें नीले एक नीले कलर की पट्टी भी बनी हुई है।

यह एक बहुत बड़ा कमरा है इसमें कुछ परदे लगे हुए हैं एक खिड़की भी है और गेट भी है।

साइड में एक एच_एफ डीलक्स मोटरसाइकिल भी खड़ी हुई है।

और यहां पर बहुत सारे बैलून लगे हुए हैं नीले रंग के।

इसके नीचे ये बहोत सारे छोटे छोटे डॉल भी टंगे हुए हैं।

एक लड़के ने सफेद कलर की चप्पल पहनी हुई है एक साइकिल भी खड़ी हुई है यहां--

यहां पर पीले कलर के कुछ घर बने हुए हैं।

यहां पर कुछ डॉग के खाने के लिए भोगोने रखे हुए हैं।

यहां पर साइड में दो टावर लगे हुए हैं।

और यहां पर कुछ उल्टी मेज कर रखी है।

यह एक बहोत बड़ी जिम है इसमें जिम करने की बहुत सारी मशीनें रखी हुई है और यहां पर लाल रंग का मैट भी बिछा रखा है।

लाल रंग के साइड में भी कुछ--

यहां पर एक बकरी का बच्चा बैठा हुआ है सफेद ब्लैक कलर का।

यह एक कैफे हैं इसमें एक सफेद कलर का बॉक्स है उसके पास एक बल्ब भी बल रहा है।

यहां पर एक लोग हरे टी शर्ट पहने खड़े हुआ है यह कुछ लड़कियों को स्पीच दे रहा है यहां पर ब्लैक रंग की कुर्सी भी है।

एक फैन भी लगा हुआ है एक पेंटिंग भी रखी हुई--

यहां पर दो तीन बाईकें खड़ी हुई है एक ब्लैक रंग की दो व्हाइट कलर की उनके पास एक साइकिल भी खड़ी हुई है।

बहुत सारे झंडे लगे हुए हैं इंडिया के एक माता रानी का भी झंडा लगा हुआ है।

इसको सफेद रस्सी से बंधा हुआ है यहां पर दो लोग एक लेडिस खड़ी हुई है एक लेडिस ने एक थैला हरे रंग का थैला पकड़ रखा है।